इस तस्वीर पे दो बड़े बड़े ब्लू पोल्स दिख रहे है।

ये एक कमरा जो ऑफिस है।

इस तस्वीर पे पांच इंसान दो ग्रीन बस एक गच्छी पीछे में एक बिल्डिंग और ग्राउंड दिख रहा है।

दीवारें जो ग्रीन ग्रास से ढकी हुई है।

ये एक भरा सा व्हाइट कमरा है।

और नीचे में ब्राउन कलर का फ्लोर है।

और एक कारपेट दरवाजा एक जो खुला हुआ है।

यहां में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

ये बहोत बड़ा सा ओपन एरिया है जहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है पिंक और येलो कलर वाला।

ये एक रेस्टोरेंट है जहां दो इंसान हैं।

ये बहोत बड़ा ओपन एरिया है।

और कुछ व्यक्ति भी है।